वह सब लोग देख रहे होंगे की देवी है जैसे सोइ हुई हैमतलब इसको स्टेचु है इसका पुतला है देखिये कितना ही गोल्डन कलर का है।

सब लोग देख रहे होंगे बहुत ही बढ़िया सोसाइटी बन रहा है देखिए कितना सारा आदमी इसमें लगे हुए काम करते हुए देख रहे होंगे बहुत ही गजब का है।

हेलो गाइज आपलोग देख रहे होंगे कि ये बहुत ही मस्त सीन है बि-- ब्रिज के ऊपर का सीन है देखिए कितना मस्त लग रहा है कितना बढ़िया पहाड़ लग रहा है